बगल में एक छोटा सा मैदान है।

जमीन पे छोटे छोटे गमले लगे हैं जमीन कच्ची है।

दीवारों पर बैनर्स लगे हैं गाड़ियों के।

ब्रिज के नीचे एक टैक्सी खड़ी है जो येलो और ब्लैक कलर में है।

यहां पर बहोत सारे लोग मौजूद हैं जिसमें बच्चे औरतें और आदमियां मौजूद हैं।

और इसके साइड में ए_टी_एम का एक बोर्ड लगा है।

एक आदमी गाड़ी पर बैठा निकल रहा है।

इसमें बच्चे के बहुत सारे खिलौने मिलते हैं।

ओर कैरम भी है और सामने दो आदमी खड़े हैं।

सामने कुछ कंघियां रखी हैं और पानी का छिड़काव--

बगल में एक मेकअप की छोटी सी दुकान है जिसपे रेवलॉन लिखा हुआ है।

रूम की दीवारों का कलर क्रीम कलर का है।

सामने एक डेस्क है जिसमें दरवाजा शीशे का बना है।

जमीनों पर छोटे छोटे फूलदार पौधे रखे हुए हैं।

और दुकान के अंदर दो कार खड़ी हैं जिसमें से एक कार का बोनेट खुला हुआ है।

दीवार पर ए_सी लगा हुआ है और पंखा लगा है जमीन पर कारपेट भी--

ये एक पुराने जमाने के डिजाइन ज जैसा घर है।